थोड़ा-थोड़ा घांस होला है।

रोड है रोड मे बोहुत सारा पानी जम गेले हय।

खेत है खेत के चारों पट्टी--

एक पूरा हरा-भरा है और बीच --

बैठल है एक गो गाड़ी से --

दो बिल्डिंग घर है और--

दुकान है समान है झोला है।

ए ओ कुछ बनल है जेकर लोग बच्चा --

ले एगो इधर बच्चा है और पानी है और --

कल पोस्टर है बड़का-बड़का छर है तार है।

अगल-बगल घर है और उकर पीछे --

गमला में ढेर सारा फुल लगेला है अब --

सारा टॉवर है तार गिल्ला है।

और बहुत सारा गाय भेंस चर रेले।

जैसे टोटो है ओकर पीछे गाड़ी है।

पाइप से पानी निकाल निकाल के पूरा धोवा है।

लिख रेले पहाड़ रेले ढेर सारा--